मंदिर दिखाई दे रहा है जो की दिखने में काफी अच्छा है जैसे की पीली कलाई जैसे की काफी अच्छे भी लग रहे सुंदर है जो भी दिखाई दे रहा है जैसे की यहाँ पर कुछ मेहमान भी दिखाई दे रहे है महिला भी दिखाई दे रहे है जो भी है बहुत सुंदर है। --

ये यहाँ इधर पोस्टर भी दिखाई दिया बहुत सारी भी दिखाई भी दिखाई दिया कार भी दिखाई दिया बहुत सारी ऊपर से नीले बादल भी दिखाई दे रही है दिखने में --